इस तस्वीर मे बोहत सारे लोग एक हॉल खड़े हुए दिखाई दे रहे है. उसके दीवाल पे जिसेस--

दे रहे है जिसमे वह सब फूल कोई कोई लोग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक छोटासा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे भगवानो की मूर्ति--

खूप सारे फूल भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है. यहा पे बहुत सारे फूलोकी माला टंगी हुई दिखाई दे रही है. जिसमे लाल गुलाब सफ़ेद फूल पीले फूल लगे है.

चडी हुई है और बोनट थोड़ासा खुला हुआ है उस के सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति के हात मे सफ़ेद कलर की बाल्टी--

उसके के नीचे बहुत सारी खिड्किया लगी हुई है बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग टोपी लगाके बैठे हुए है और कुछ लोग छाता लगाए हुए--

मुझे इस तस्वीर मे एक छोटासा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के बिछो बीच पाइप से ए--